और कुछ व्यक्ति हाथ जोड़कर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक विशाल मंदिर दिखाई दे रहा है।

सामने दो व्यक्ति नाव के ऊपर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक मकान दिखाई दे रहा है जिस पर बड़े अक्षरों में --

सामने एक विशाल बड़ा मंदिर दिखाई--

और ट्रिपल नाइन बना हुआ दिखाई दे रहा है।

यह दो व्यक्ति मेज पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और कई चेयर भी दिखाई दे रही है लाइटे जलती हुई दिख रही है।

और कुछ व्यक्ति लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं।

लाल और नीले अक्षरों में मारुति सुजुकी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

कुछ पेड़-पौधे नजर आ रहे हैं।